इस इमेज में सामने यहां पर एक हाल दिखाई दे रहा है जहां कुर्सी पर कुछ लोग बैठे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर मंदिर दिखाई दे रहा है यहां पर भगवान की मूर्ति रखी है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक पहाड़ दिखाई दे रहा है यहां पर एक रास्ता भी बना हुआ है।

एक पार्क दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लोग बैठे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक चट्टान दिखाई दे रही है यहां पर एक लड़का हाथ ऊपर करके खड़ा है।

एक मोहन रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक टेरेस दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक जंगल का दृश्य दिखाई दे रहा है यहां पर कुछ सूखे पेड़ नजर आ रहे हैं।

सामने यहां पर कुछ मजदूर भी दिखाई दे रहे हैं।

उसकी सूंड पर एक लड़का बैठा नजर आ रहा है और यहां पर पेड़ भी लगे दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर यहां पर कुछ लोग नजर आ रहे है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक खेत दिखाई दे रहा है जहां पर हरे रंग की फसल नजर आ रही है।